यहाँ पर की बहोत सारी सीटें लग रही हैं और ये ज्यादातर मूवी थियेटर में ही होती है और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे इसकी सारी सीटें लाल हैं।

यह जो हम तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर एक किसी बड़े गेट की है जो कि जिसे इंडिया गेट होता है नहीं --

रविवार महा आरती बारह बजे से भंडार चालू --

ये एक मम्मी डैडी टॉम एंड सेरी की दुकान है और यहां पर --

बोहोत सारी दुकानें ऐसी है जिन पे की बोहो साड़ी ट्राउजर प्लाजो और बोहोत सारा सामान मिलता है और बोहोत ही ज्यादा खूबसूरत-खूबसूरत कपड़े --

एक थमले से लगाकर और इनके हाथ में के कुछ नोटबुक्स भी हैं।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

और जैसे के यहां पर बाल्टी टब और बहुत सारे सामान है।

ये इस देश का तो नहीं क्योंकि यहां पर इंडिया में जो कि --

ऐसी जगह नहीं होती बीच पर जो कि अलग-अलग जगह होती है।

जो कि एक प्याले में और सलाद है और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिश है।